भगवान का मूर्ति बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ पे शंकर भगवान.--

यह देवी जी का मंदिर है जहाँ पे सभी लोग पूजा करने आते हैं। इसका --.

ये एक किराना दुकान है।

लिए बना है। कांच का बना है।